इस tutorial में हम निम्नलिखित सीखेंगे
documents को देखना
डॉक्युमेन्ट्स को प्रिंट करना
यहाँ हम अपने operating system के रूप में उबंटु लिनक्स 1004 का उपयोग कर रहे हैं और लिबर ऑफिस suite version 334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
यह हैं print layout और web layout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
फिर ok पर click करें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
इसे quick printing कहते हैं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
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः
documents देखना
document print करना
व्यापक नियतकार्य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
निम्न link पर उपलब्ध video को देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद